यख मा युं पर पाणी का छिटा कर छन मार्यां यख मा जी युं पर कांडा भी होंदा छन पत्ता छन हरयां भरयां यख मा जी यु जु छन गमला भितर छन पिछाड़ी फणा गेंदा का फूल कर भी दिखेण लग्यां यखम नीला रंग की टाट पट्टी छा।